यहाँ पर कुछ तार दिख रहे हैं तार ब्लैक कलर के दिख रहे हैं और यहाँ पर काफी सारा बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग काफी बड़ा है।

बैठे हुए दिख रहे हैं एक लड़की दिख रही है जिसने रेड कलर की टी-शर्ट पहन रखी है उसके बाल दिख रहे --

और यहाँ पर एक पर्सन है कुछ पर्सन सेल्फी ले रहे हैं एक पर्सन खड़ा हुआ है जो मोबाइल ले के सेल्फी ले रहा है उसने ब्लैक कलर का टोपा पेन रखा है। ब्लू कलर का जैकेट पहन रखा है।

इसमे खड़े हुए है जिसमें ऑरेंज कलर का जाकेट डाल के रहा है सभी ने सभी ने मास्क पहन के रखा है ब्लू कलर में और किसी ने कैप पहन के रखा है जो येल्लो कलर का है किसी ने व्हाइट कलर का पहन रखा है।

पिंक कलर की बाल्टी रखी हुई दिख रही है। यहां पर एक साइकिल रखी हुई दिख रही है यहां पे आसमान दिख रहा है ब्लू कलर के काफी सारे खंभे दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक खंभे और कुछ तार दिख रहे हैं ब्लैक कलर के।

सन दिख रहा है जिसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है और ब्लूटूथ है उसमें रेड कलर की और उसके हाथ में व्हाइट कलर का मोबाईल दिख रहा है और यहाँ आस-पास में काफी सारे जिम का सामान रखा हुआ है नीचे कुछ मेट बिछी हुई दिख रही है जो रेड ब्लैक कलर की दिख रही है।

फोन दिख रहा है। पर्सन खड़ा हुआ दिख रहा है उसके हाथ मे मोबाईल है पीछे कुछ सीड़िया दिख रही है जो येलो ब्लैक कलर की दिख रही है।

चेर रखी हुई है। चेर के उपर रखा हुआ है जो ब्लेक कलर का दिख रहा है और दीवार दिख रही है दीवार का जो पेंटिंग कलर ऑरेंज कलर दिख रहा है और व्हाइट कलर दिख रहा है और काफी सारा यहां पर कुछ सामान रखा हुआ दिख रहा है पीछे में --